ये एक रेस्टोरेंट की फोटो है जहां पर चार पांच सोफा है।

और ऊपर में कलरफुल दीवार हैऔर पैन लगा हुआ है।

ये रोड की फोटो हैऔर बहुत सारे लोग रोड प खड़े हैं।

दो साइकिल है तीन बाइक्स हैऔर एक दुकान है।

एक रोड है अगल-बगल में बहुत सारी मकानें हैंऔर ऊपर में एक---

ये आदमी पर्पल कलर का शर्ट पहना है वाइट कलर का पेंट पहना है।

ये एक जनरल स्टोर की पीक है जहां पर सामने में बहुत सारी परफ्यूम्स रखी हुई है अलग-अलग कंपनी की---

ये एक ऑफिस की फोटो है जहां पर एक---

रोड पे बहुत सारे कंकर हैं मिट्टी बालू है।

दो कुर्सियां है और ऊपर में भी राउंड टेबल है दो कुर्सियां है सोफा है पंखा है लाइट है।

बहुत सारे अवार्ड्स रखे हुए है।

जिसमें इंडियन फर्स्ट पेमेंट का--

ऑफिस और ऊपर में तीनों खिड़कियाँ है बड़ी-बड़ी।

और रेड और येलो पिंक कलर का वैलम लगा हुआ है।

ये एक होटल की फोटो है जहां पर डबल बेड का---

और दो पिलो है और एक और पिलो है जो कि ब्लैक और वाइट कलर का है और दो फोटो फ्रेम है।

बगल में चार्जिंग पॉइंट है और बेड पे रेड कलर का---

और एक ब्लैक कलर का बैग है और ऊपर में लाइट लगा है वाइट कलर का।

ये एक मॉल की फोटो है जहां पर बहुत सारे कलरफुल्स बैग है।

एक फ्लाईओवर है फ्लाईओवर के नीचे एक वाइट कलर का स्कॉर्पियो है और उसके सामने में एक टेंपू है।

एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है पॉकेट कैफ और अंदर में डाइनिंग टेबल है चार पांच।

एक जारी टाइप सा जाली है और पीछे में हरा-हरा पेड़ है बहुत सारा और एक---

अ बिल्डिंग है वाइट कलर का और बहुत सारी हिरने है।

आठ बाइक लगी हुई है और पेट्रोल पंप पे सभी लोग तेल ले रहे हैं और एक ये पिकअप लगा हुआ है।

पिलर है जो वाइट और ब्लू कलर का है उस पे एक फैन लगा हुआ है और नीचे में---

ये सामने में एक वाइट कलर का अपार्टमेंट है जिसका नाम है राजेश्वर कॉम्प्लेक्स और एक--

एक रेस्टोरेंट है जिसमें वाइट और ब्लैक कलर का बैगिंग लगा हुआ और बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहा है और तीन टेबल है और---

एक जिम है जिसमें बहुत सारी मशीनें हैं और एक टायर है।

और एक कैंची है और एक पेन है।

ये एक दुकान है जिसमें पेड़-पौधे के सामान मिलते हैं और---

ये एक मिट्टी का गमला टाइप सा बना हुआ है और दो सामने में तीन सामने में ब्लैक चेयर है।

ये एक छोटा सा रूम है जिसमें चार पांच लड़के बच्चे जो है कि डांस करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं।

और तीन-चार बच्चे नीचे टाइल्स पर बैठ कर के बात कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं।

ये घर है जिसका जिसके सामने में दो बड़ा सा गेट है और एक छोटा सा गेट है और एक बाउंड्री टाइप सा मारा हुआ है।

और आगे में फील्ड है और ऊपर में छत है और --

अगल-बगल में घर टाइप सा बना हुआ है और यह शायद पेट्रोल पंप का फोटो है।

ये फोटो एक सरकारी स्कूल की है जो कि स्कूल के ठीक सामने से एक बंदा गुजर रहा है जो कि रेड कलर का शर्ट पेहना है और ब्लू कलर का पेंट पेहना है।

ये टाई लगी हुई है और एक राउंड टेबल है और सामने में झूमर लगी है छत के ऊपर में--

और एक बड़ा सा बोर्ड है वाइट कलर का और एक ब्लैक कलर का बोर्ड है जिस पर पढ़ाया जाता है बच्चों को।

ये एक बुक की किताब है जहां पर न्यू और पुराने बुक मिलते हैं और बेचे जाते हैं इस बुक का नाम है दुकान का बुक वर्ल्ड ।

ये फोटो एक घर की है जहाँ पर बहुत सारे घरें हैं बहुत सारी मकानें हैं और एक ग्रीन कलर का पेड़ है जो कि नीम का पत्ता का पेड़ है।

और ये येलो कलर का कलर किया हुआ है दीवार और ब्लू कलर का एक गेट है बड़ा सा।

ये फोटो एक स्टेशन की है जहां पर तीन दो-तीन रेलवे लाइन है और एक रेलवे लाइन पे मालगाड़ी खड़ी है।

ये जूते की दुकान है जहां पर बहुत सारे कलरफुल्स अलग-अलग डिजाइन के नए नए-नए ट्रेंडिंग जूते मिलते हैं।

और एक लाल कलर का टोकी रखा है।

और काफी लोग गार्डन में बैठ कर के मस्ती कर रहे हैं।

और नीचे में बहुत सारी टेंपू हैं और कुछ आदमी सब खड़े हैं जोला वला लेकर के।

ये एक डांस स्टूडियो है जिसमें पांच बच्चियां डांस कर रही हैं और एक बड़ा सा साउंड बॉक्स रखा हुआ है।

अपना हेलमेट लेकर खड़ा है सामान लेने के लिए---

फिर एक वाइट कलर के वस्त पे एक आदमी छत पे खड़ा है।